स्ट्रिंग फंक्शंस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मैं इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊँगा जोकि यहाँ दिखाए गए हैं
इनमें से अधिकांश बहुत उपयोगी और नियमित उपयोग में आने वाले एप्लीकेशन के लिए अनुकूल हैं
साथ ही जो विडियो मैं बनाऊँगा या जो बनाए हैं उन सभी के लिए निश्चित रूप से अनुकूल है
ठीक है तो जो पहला हम बताएँगे वह है strlen
यह काफी सरल है जिसमें हमारे पास hello नामक एक स्ट्रिंग वेल्यू है
तो अब यह फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या की गिनती करेगा
तो हमारे पास 1 2 3 4 5 अक्षर है
और यदि हमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करके वेरिएबल स्ट्रिंग की वेल्यू एको करनी है तो हमारे पास हमारे ब्राउज़र में परिणाम 5 होना चाहिए
अबअगला फंक्शन इसके लिए लागू होता है
यदि आप एक for लूप का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग अक्षरों के माध्यम से लूप करना चाहते हैं तो आपको विशेष सबस्ट्रिंग को भीतर लेने के लिए mb सबस्ट्रिंग की आवश्यकता होगी
उदाहरण के लिए अगर आपके पास my name is alex नामक स्ट्रिंग है
और हम इसके माध्यम से लूप करना चाहते थे तथा प्रत्येक अक्षर को जाँचना चाहते हैं
उदाहरण के लिए यदि आपने नेम स्प्लीटर ट्यूटोरियल देखा है हम प्रत्येक अक्षर में से लूप करते हैं जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिलता और फिर वहाँ से हम last name सेव करते हैं
तो पहले मैं mb सबस्ट्रिंग एको करता हूँ
और फिर हम उस स्ट्रिंग को स्पष्ट रूप से बताते हैं जिसे हमें जांचने की आवश्यकता है
आपको शुरुआती पॉइंट बताने की जरूरत है इसलिए मैं कहूँगा 1
वास्तव में मैं शून्य कहूँगा और फिर लेन्थ कहूँगा 2
तथा यह my एको करना चाहिए
रिफ्रेश करें ठीक है हमें यहाँ my मिला है
ठीक है तो इसने क्या किया है कि यह इस स्ट्रिंग के माध्यम से गया है ठीक है हम शून्य से शुरू करेंगे और 1 2 के लिए इसे यहाँ एको करेंगे
अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा strlen माफ़ कीजिये लेन्थ इक्वल्स strlen ऑफ स्ट्रिंग length equals strlen of string
इस स्ट्रिंग की लेन्थ के लिए मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ
और फिर मैं इस वेल्यू को 2 से बदलूँगा
जब तक मैं शून्य से शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ स्ट्रिंग लेन्थ डाल सकता हूँ या माफ़ कीजिए लेन्थ और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं हमें पूरी स्ट्रिंग मिलती है
और मैं यह भी कर सकता हूँ कि यहाँ अंत में अपने नाम के लिए strlen माइनस 5 पूर्णविराम सहित लिख सकता हूँ तो मैं कह रहा हूँ माइनस 5
तो यह लेन्थ में से 5 निकाल देगा और सिर्फ my name is एको करेगा
रिफ्रेश करें और हमें my name is मिलता है
तो यह दो फंक्शंस बहुउपयोगी हैं और strlen का इस्तेमाल करके जोकि यहाँ mb सबस्ट्रिंग के लिए लागू होता है
ठीक है अतः अगला फंक्शन जो हम देखेंगे वह है explode
अब explode एक स्ट्रिंग लेगा जैसे कि यहाँ हमारे पास है
चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5
और explode फंक्शन explode एको करेगा
यह आपकी प्लेन स्ट्रिंग को शुरुआत से अंत तक ब्रेक करेगा यह इसे एक अरै array में ब्रेक करेगा
मानिए कि हमें यह बनाना है और लिखना है
मैं 1 2 3 4 5 अरै के प्रत्येक अलग एलिमेंट में संचित चाहता हूँ
मैं कहूँगा explode string नहीं मैं नहीं कहूँगा – स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मैं निर्दिष्ट करूँगा
फिलहाल यह एक स्पेस है
यदि हमारे पास स्लैश होता हम इसे स्लैश से बदल देते
क्योंकि यह डिटर्मिनेंट होगा जहाँ यह शुरू होता है और यह सेपरेटर है
यह दूसरी वेल्यू है तो फिलहाल के लिए स्पेस रखते हैं ठीक है
तो यहाँ जो चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं यह एक एस्ट्रिक हो सकता है
यह कोई भी चिन्ह हो सकता है आपको निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या चीज़ स्ट्रिंग को ब्रेक कर रही है
explode और फिर स्ट्रिंग का नाम
और यह हो जाना चाहिए
चलिए उसे देखते हैं
रिफ्रेश करें
अरै अभी अरै को एको कर रहे हैं
आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक अरै को एको किया है
हम यह कह सकते हैं कि यह अरै पर सेट किया है क्योंकि यह हमने अपने अरै के बुनियादी ट्यूटोरियल में सीखा था
और यहाँ यह कहता है कि हमारे पास अरै है
तो अब अगर हम इसी पर यह फंक्शन का प्रयोग करते हैं और फिर एको करते हैं
वास्तव में पहले हमें इसे वेरिएबल में सेट करने की आवश्यकता है
चलिए लिखते हैं exp array equals यह और फिर कहेंगे exp array और हम नम्बर्स को एको कर सकते हैं
हम शून्य एक दो तीन चार इस्तेमाल कर सकते हैं और यह होगा
तो जैसे ही यह वेल्यू शून्य होगी यह एक के बराबर होगा
तो मान लीजिए हमें एक एको करना है जोकि दो के बराबर होना चाहिए
ठीक है हमने सफलतापूर्वक अपने अरै को तोड़ दिया है
जैसा कि मैंने पहले कहा था हम यहाँ स्लैश डालते हैं और स्पेस को स्लैश से बदल देते हैं
और हमें वास्तव में यहाँ वही परिणाम मिलेगा
ठीक है तो यह explode है
अब उसका विपरीत implode है
चलिए इसे हटाते हैं
और आप यहाँ implode फंक्शन देख सकते हैं इसे join भी कहते हैं
तो आप इसे join या implode कह सकते हैं जो आप चाहते हैं
तो मैं क्या करूँगा कि एक नई स्ट्रिंग तथा इसकी implode वेल्यू टाइप करूँगा और हम अपनी exparray implode करने जा रहे हैं
ठीक है चलिए इसे देखते हैं
तो हमने इसे किसी एरर के बिना कर लिया है
अब यदि हम अपनी नई स्ट्रिंग एको करते हैं
यह याद दिलाएगा कि हमने पहले किससे शुरुआत की थी कोई स्पेसेस के बिना
लेकिन यह किया जा सकता है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किससे आप अरै ब्रेक करें
तो यहाँ मैंने एक स्पेस डालने का निश्चय किया हैलेकिन अगर आपको यहाँ स्लैश चाहिए तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं
लेकिन वापस आते हैं यह फंक्शंस टू एंड फ्रॉमto and from अरै को बदलने के लिए हैं
तो explode तथा implode और जैसा कि हमने पहले कहा था इसे join लिख सकते हैं
अतः रिफ्रेश करें और हमें वही परिणाम मिलता है
तो यह implode फंक्शन है
ठीक है –अगले फंक्शन पर हम जा रहे हैं वह है nl2br
अब वास्तव में यह फंक्शन कार्यात्मक और सरल है जब हम डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं
जब तत्काल लाइन के आधार पर डेटा संचित किया जा रहा हो
अब याद करें कि मैंने कहा था यदि आपने बुनियादी ट्यूटोरियल देखे होते तो आपको पता होता
यह hello या यह कहूँ hello new line another new line और मैं यहाँ एक अर्धविराम लिखता हूँ जोकि यहाँ लाइन ब्रेक है
इसे ऐसे ही रखते हैं
यदि इसे एको करते हैं हम सोच सकते हैं कि क्या होगा
हमें यह मिलेगा
यदि हमें वे अलग लाइन पर चाहिए तो हमें br का उपयोग करना होगा
तो यदि किसी कारण से आपको html का उपयोग नहीं करना है या यदि आप डेटाबेस के परिणाम से ले रहे हैं तो उसमें लाइन ब्रेक डालने के लिए आपको एक काफी जटिल फंक्शन बनाना होगा
यह होता है जब लोग इसे डेटाबेस में सेट करते हैं
अतः यदि आप इसे नहीं बना सकते हैं और डेटाबेस में सिर्फ यह लेम टेस्ट है आप वास्तव में यह करना चाहते हैं कि एको ऐसे हो कि इसमें खुद से ब्रेक डालना और उद्धरणचिन्हों की आवश्यकता न हो
लेकिन यदि आप एक स्ट्रिंग की शुरुआत में nl2br लिख रहे हैं और हम यहाँ पर कोष्ठक का अंत करेंगे
आप देखेंगे कि यह उसी तरह एको करेगा जैसा हम चाहते हैं
हमें ऊपर एक लाइन ब्रेक मिलेगा क्योंकि हमने यह किया है – यहाँ एक स्पेस दी है चलिए इसे हटाते हैं
तो nl2br के बिना हमें सभी चीज़ें एक लाइन पर मिलेंगी और nl2br के साथ हमें अलगअलग लाइन्स मिलेंगी जैसे कि हम चाहते हैं
अच्छा तो समय की कमी है इसलिए विडियो यहीं रोक देते हैं अन्य फंक्शंस के लिए एक दूसरा भाग है कृपया उसे देखें
आपसे फिर मिलेंगे यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद